यह एक बहुत बड़ा जेसीबी है।

हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसके ठीक बाहर में एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है।

बस बहोत बड़ी खेत दूर दूर नज़र आ रही है।

यह एक छोटा सा दुकान है।

श्री दुर्गा मनियारी की दुकान--

उसके दुकान में डाइपर वगैरह--

स्वेटर पेहने हुए दिखाई दे रहा हैं।

वो काले रंग की गाड़ी है और दो चक्के नज़र आ रहे है जो काले और सफेद मे है।

यहाँ पर शादी का एक स्टेज बना हुआ है।

यहाँ पे पर्दे लगे हैं पर्दे सफेद रंग के लगे हुए है।

और यहाँ पे दो स्कूटी पार्क की हुई हैऔर एक बाइक --

और हरे भरे पेड़ और कुछ घरे दिख रही है।

यह एक मिठाई का छोटा सा दुकान है जहां ऊपर में बहोत सारे मिठाई के डब्बे रखे हैं और एक मशीन --

यहां पर दो मंदिले दिखाई दे रही है।

बहोत सारी आदमी और लेडीजे --

हरे रंग के सूट पहनी हुई है और बहुत तरह के लहंगा--

यहाँ पर काली रंग की कुर्सियाँ बहुत सारी रखी हुई है।

जैसे पीला सफेद और बैंगनी कलर के बैलून दिख रहे हैं एक लड़का पीले रंग का शर्ट पहने--

यह एक घर दिखाई दे रहा है जीसके ठीक ऊपर में--

अब बीच में ठीक एक स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है जो गेट के सामने--

कुछ ईंटे भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर से कु --

बोर्ड में नीले रंग का लिखा हुआ है यूनीक टेंट हाऊस --

और एक आदमी जो फल की दुकान में है।

यह एक छोटा सा घर है जो पीले रंग का है और बोर्ड पे लिखा हुआ है नेशनल --

और एक किनारे में सफेद रंग का पानी का टंकी बना हुआ--

यहाँ पर बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं।

कुछ आदमी मु मूर्ति के पास है और कुछ बाहर खड़े दिखाई दे रहे--

हैं जहां पर एक आदमी एक नीले रंग की कुर्सी।

और एक आइना दिख रहा है आइना के ठीक सीधा एक ए_सी दिख रहा है ऊपर मे एक एल_इ_डी टी_वी भी दिख रा--

यहाँ एक संगीत का क्लास चल रहा है जहां पर--

यहाँ एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जहाँ पर--

ब्रांड है वो लाल रंग की है उसके ठीक पीछे और एक गाड़ी नजर आ रही है।

यह एक सैलून है जहाँ पर एक लड़का--

है और डिब्बे में क्रोमा बी लिखा हुआ है ऊपर में कुछ लाइटें भी दिख रही हैं और ऐ_सी भी--

एक आदमी जो तबला बजाते हुए दिख रहा है।

यहां पर ऊपर में पुकेनराज लिखा हुआ है।

के पर्दे का कलर हरे और लाल में है--

और यहां बहुत बड़े-बड़े आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

ठीक उस दुकान के अंदर सीमेंट के बोरे रखे हुए हैं सजा कर--

और एक किनारे में दुकान और सफेद रंग की घड़ी भी दिखाई दे रही है।

प्लग भी दिखाई दे रहा हैं और मैट का कलर रंग बिरंगे हैं जैसे नीले--

यहाँ पर बहुत सारी मशीनें और वाशिंग मशीन की तस्वीरें बनी हुई है और बाहर में भी एक बैनर बना है।